यह एक सलून है। यहां पर तीन लोग हैं जिसमें से दो दो इंसान है जो सलून वाले है और एक य आदमी है जो अपना बाल कटवा रहा है।

यह एक ब्यूटी स्पा है यहाँ पर एक आदमी है जिसने अपने मुह पर क्रीम लगाई हुई है उसने पिंक और ब्लू कलर की टोवेल लपेटी हुई है उसने अपने एक हाथ मे अंगूठी पहनी हुई है।

यहां पर पाँच लोग है जिसमे से एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है फोन पर बात कर रहा है और एक आदमी चेयर के पास खड़ा हुआ है| यहां पर तीन चेयर है।

यह एक गाँव है| गाँव में एक झोपड़ी टाइप का घर है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है।

ये एक विद्यालय है यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है।

एक पंडाल का दृश्य है यहां पर भगवान की कई प्रतिमाये-- अलग -अलग प्रतिमाये है।

यहाँ एक पंडाल लगा हूआ है| पंडाल मे एक मूर्ति बैठी हुई है।

यह एक प्रोग्राम चल रहा है यह पर एक लेडिज है जो अलग सा पोस दिए हुए है।

यह एक सार्वजनिक स्थल है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम टाइप का चल रहा है यहाँ पर कुछ लोग है जिन्होंने अपने हाथों पे ड्रम टाइप का पहने हुए है तथा कुछ लेडिज है उन्होंने लाल कलर की साड़ी पेहन हुई है।

यह एक सार्वजनिक स्थल है यहां पर कुछ यात्रा टाइप की निकाल रही है| यहां पर टेंट लगा हुआ है।

टेंट के ऊपर झालरे लगी हुई है। यहां पर बहुत से लोग एकट्ठा है| कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ कर यात्रा को देख रहे है।

झूले लगे हुए है झूले पर बहुत से बच्चे एकठा है वे झूला झूल रहे है और एक बच्चा दीवार पर कुछ कर रहा है | उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की लोर पहनी हुई है।

कुछ ने व्हाइट कलर की टी-शर्ट और व्हाइट कलर की ही पेन्ट पहनी हुई है।